बहुत सारे लोग भी हैं ।

नीचे एक आदमी बैठा हुआ है । आदमी के हाथ में मिट्टी है ।

सामने दो गाड़ियां खड़ी हैं।

आसमान भी देखने में बोहोत सुन्दर है ।

ऊपर में बोहोत सारे तार भी दिख रहें हैं । पोल के खम्बे भी दिख रहे हैं ।